इस तस्वीर में मुझे वाई_सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक वाइफ दिखाई दे रहीं हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ तार दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक लोबि दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पेन दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में मुझे चांदी के आभूषण दिखाई दे--

इस तस्वीर में मुझे एक सूरज दिखाई दे रहा है।